दो बैड उसे बिछा रखे है और कुछ लोग खड़े हुए भी है इसके बीच मे एक पेड़ भी है और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है।

और टॉवर है तार है पेड़ पौधे भी है और यहाँ पर कुछ लोग भी है दो पटरी है।

यह बोहोत बहु बड़ा एक बोहोत सुंदर सा होटल है| इसके अंदर कुछ चटाई वटाई बिछी है | कुछ कुर्सियां रखी हुई है और कुछ मेज रखी हुई है।

एक बहुत बड़ी शोरूम कैंटीन दुकान है इसके अंदर मिठाई से लेकर चिप्स वगैरा और सब खाने -पीने तक की चीज है और कुछ शीशे लगे हुए हैं।